टेबल का कलर रेड है और सोफे लगे हुए है।

कार रिपेयर का स्टोर है ये जिसमें कार रिपेयर हो रही है।

येलो कलर ऑरेंज कलर पिंक कलर --

और काफी लम्बे भी है शायद सीमेंट है ये।

अंदर स्टैचू ब्लैक कलर का उसमे उसकी पूरी सारी डिटेल्स लिखी हुई है।

साथ तो पेट्स हैं इसमें जो जिसमें कलरफुल है जो।

और मिट्टी से पत्थर से बने हुए कुछ पोरशन दिखाई दे रहे है |

और इसका गेट का कलर आ ग्राउन और ब्रा ब्राउन कलर आ है | सामने पेड़ --

दो व्यक्ति मिलकर एक कार को वॉश कर रहे है | एक उसके चके को वोशड कर रहा है |

पानी में दो बतख हैं जो ब्लैक कलर के हैं और वो तैर रहे हैं उनकी चोंच ऑरेंज कलर की है वाइट कलर की है।

और ये ग्रीन कलर की घास है छोटी-छोटी।